इस तस्वीर मे एक बहुत ही अच्छा घर सा दिखाई दे रहा है और उसके बाजू मे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर जाने का गेट दिखाई दे रहा है।

और एक लड़का अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और एक लड़की स्कूटर पर बैठी हुयी दिखाई दे र --

रंगबेरंगी गुब्बारे लगे हुए है उसका गेट बना हुआ है और कुछ दो पहिया वाहन खड़े हुए है वहा।

सफ़ेद् दिवारे दिखाई दे रही है छत दिखाइ दे रहे है।